इस फोटो में एक आदमी बुकशेल के आगे खड़ा है जिसके हाथ में ब्लैक कलर की एक बुक है जिसका नाम एवरी मैन वार है।

इस पिक में एक रेख जैसा कुछ रखा हुआ है जहां पर ब्लैक कलर की--

इस पिक में एक ब्लैक कलर का मोटर टेबल जैसा कुछ रखा हुआ है बैकग्राउंड में कुछ रेक पे डब्बे रखे हुए है ब्लैक और वाइट कलर के--

जमीन पे छोटे छोटे घास उगे हुए है दो बड़े बड़े पेड़ हैं।

इस इस पिक में बताया है एक पन्नी हैं पन्नी व्हाईट कलर की है उसके अंदर बहुत सारी एक मछली है झींगा --

ऊपर बॉर्डर में लिखा हुआ है साईं राम बाबा कॉलेज एजुकेशन झज्जर।

बैग बड़े हैं बच्चों के बहोत सारे और एक होटल जैसा बना रखा है यहां पर।